यहां पे खूब लड़कियां खड़ी हुई हैं और ये आप देख लीजिए बहुत बड़ा मैदान है।

आय दू-तीन ठू फूल रखा हुआ है। लड़की हरा कलर का कपड़ा एक ठू नीला कपड़ा पहनी है।

दू-तीन लोग खेतवा में टहल कर के पता नहीं क्या बो रही हैं।

वर्क विज़न फॉर इट हमे को पढ़ के बता दिए। ये कोई जिम का फोटो है।

एक लेडीस हमें दिख रही हैं और यह बहोत सारे ये लोग चाय पीने के लिए यहाँ पे आते होंगे| ये काफी एडवेंजेरस हमे भी लग रहा है।

और जंगल के बीचोंबीच ऐसे कॉफी डेंस खोल सकते हैं जो काफी प्रचलित होते हैं।